बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

वे दिखाई दे रहे हैं लाल रंग का बेंच भी रखा गया है।

एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ए_टी_एम के ऊपर--

और वहाँ पर ए_टी_एम के बाहर कुछ लाल रंग के गमले और उनमें पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

गाड़ी भी दिखाई दे रही है गाड़ी के आगे कुछ बच्चे भी खड़े दिख रहे हैं।

और कुछ हरे रंग के क्रिएट भी पड़े दिख रहे हैं।

और एक बाल्टी भी वहां पर पड़ी दिख रही है।

एक लाल रंग की कुर्सी भी पड़ी दिख रही है।

कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस बिल्डिंग को सफेद रंग किया गया है बिल्डिंग के आगे--

एक ऑटो साइकिल खड़े दिख रही है। एक आदमी बैंच के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है।

और एक सफेद रंग की गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है।

और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए है।